एक फुटबॉल का मैदान ह। एमें कुल बाली बाल फुटबॉल खेलत ह व। बीच मे रॉड लगल ह पीला-पीला रंग का अ साइड से अगल-बगल ताड का पेड़ नियर लगत ह।

ये गंगा घाट का सीन हा ए के आगे का मान महल टाइप का लोकल ह ई काशी इन्द्र चिकितशल्य का लागत ह।

ई पार्क ह। म स्कूल के बाहरे पार्क ह। आ छोटा-छोटा पेड़ ह। आ छोटा-छोटा घांस लगल ह।

जैसे कि अगल बगल छोटा छोटा घास ह आदमी बइठ सकला और पेड़ भी ह छोटा छोटा। ओपर लगल ह कोढ़वन जैसे कि कौनो टोपी टाइप क पहिनावल ह ओईसने लागत ह।

ई मॉल ह। एमे हर प्रकार क समान मिलत ह। एके फ्रिज भी लौकत ह। ऊपर एसी एसी भी लगल ह सैमसंग क --

पुराना मकान नियर लागता देखे मे एकर कलर जैसे तोता पैरी रंग क ह।